और कुछ हरे रंग का बोर्ड सा लगा हुआ--

और इसमें बहुत सारी कुर्सियां भी लगी हुई --

जैसे कि लिमका की बोतल है कोका कोला और लेमन जूस भी है जैसे मिरिंडा ।

मुझे एक बस स्टैंड की फोटो है बस स्टैंड पर एक बस खड़ी हुई है बस का रंग है पिंक एंड व्हाइट ।

और व्हाइट रंग का कुछ बॉर्डर बना हुआ है।

खड़ा है एक लड़का और एक पेड़ का रंग है हरा और दुर दुर तक घर भी--

ये एक स्टेज है स्टेज पर कुछ औरते खड़ी हुईं--